यहा बहुत ही खूबसूरत लाइट का गेट दिख रहा है चारों तरफ लाइट से जगमाता हुआ ये गेट अंदर मे चारों तरफ लाइट लगी हुई हैं।